पलंग का रंग लाल रंग का है और सामने पीले कलर की दिवार है। जिस पे दो तस्वीर लगी हुए है |

उसके चारो तरफ तिरकोना आकार के छोटे छोटे पार्ट्स बने हुये है जिसके बीच में गोल घेरा भी है।

और बिल्डिंग के बाहर दो बाइक खड़ी हुई है और बिल्डिंग के साइड में जो छेद वाली जाली है उसपे भी नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

ये एक जेसीबी मशीन है जो खुदाई का काम कर रही है। इसने कम से कम बारह फीट का गड्ढा खोद रखा है।

ये एक टी-शर्ट का शोरूम है इसमें लाल रंग की टी-शर्ट व्हाइट रंग की और फिरोजी रंग की और नीले रंग की टी-शर्ट --

सामने लगी हुई है और साइड में हैंगर में टीशर्टें लगी हुई है और दीवार पर दो पोस्टर भी लगे हुए हैं।

जो तीन बोट आधी ग्रीन और आधी व्हाइट है और एक पिंक कलर की है और एक बोट चार रंग की है।

ये एक पार्क है इस पार्क में बच्चा टंकी के पाइप से पेड़ों को पानी दे रहा है।